यहाँ पे (पर) एक ऑटो-रिक्शा है और यह ऑटो-रिक्शा ब्लैक कलर की है और ये रोड के लेफ्ट साइड खड़ी हुई है और उसके ऑपोजिट में भी कई दुकान है (हैं)।

और एक आदमी फोन अ देख रहा है स्काई ब्लू कलर है।

ये एक आं रोड का सीन है जहाँ बोहोत से व्हीकल्स आते-जाते हैं औ यहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स भी हैं।

और एक ओटो एक कार जा रही है और उतने लोग तो नहीं है इधर।

यहाँ पे बहोत अं सारे सर्विसेज़ ब्यूटी सर्विसेज़ होते हैं और राइट साइड पे भी दोसरे दुकाने है और ये सालोन बहुत फेमस है।